ये दृश्य बहोत ही अच्छा है। हमारे सामने से एक नदी गुजर रही है और उसके सामने एक बड़ा पहाड़ है जहाँ पर धूप पड़ रही है औ --

ये एक टर्मिनल है यहाँ से हवाई जहाँज उड़ते हें और अ लोग विदेश यात्रा करने के लिए जाते हैं और मैं इस तस्वीर में देख पा रही हूँ सामने एक इंडिगो हवाई जहाँज भी है।

वेलकम टु प्रयागराज एयरपोर्ट ये हम सामने इस तस्वीर में बोर्ड लगा हुआ है उसे देख रहे हैं और सामने ही तीन पुलिस वालों के --

ये एक पुरानी बिल्डिंग है बिल्डिंग में बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं जो इसकी शोभा को बढ़ा रही हैं और बिल्डिंग के नीचे सीढ़ियों में दो लड़के बैठे हुए हैं।

जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है।

इ घर का द्वार है। इसके सामने टेंट लगा हुवा है।

सामने एक प्लेग्राउंग है जिसमें कुछ लोग रनिंग कर रही हैं और हरा ग्रास है। एक बहोत ही बड़ी लाइन है।

पुराना राजा का महल लग रहा है जिस में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

यह कहीं पर जाने का दरवाजा है। वहां पर छोटी-छोटी स्टैर्स हैं और ब्लैक का गेट है एक अंकल इधर से जा रहा है। दूसरा अंकल उधर से आ रहा है।